कोई योगदान हो सकता है और जैसे कि ये एमएस है नहीं इसमें महेंद्र सिंह का एक बुवारा है और यहां पर बहुत सारी मशीनें हैं जिस में कि हम जिम कर पाए मतलब एक --

मतलब एक यूनियन बैंक है और जिसपे के विक्रेंज एक कोनर विक्रेंज कोनरा केनरा लिख रहा है और ये एक --

और यहाँ पर सभी सब्जियां हैं जो कि मतलब यहां पर आलू गोभी भिंडी तुरई लौखी सब सब्जि --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

यह जो हम तस्वीर देख रहे हैं इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक मतलब यहाँ पर मतलब दही है ये बहुत ही मतलब एक आनंदा का दही है ये इसमें के नीले ढक्कन और सफेद डिब्बे हैं।